एक पीला कलर का खंबा खड़ा दिखाई दे रहा है आ हरा-भरा घास दिखाई दे रही है।

यह ईव्निंग का टाइम दिखाई दे रहा है नीचे कुछ कचरा कूड़ा पड़ा दिखाई दे रहा है दुकान में बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है टीन का छत दिखाई दे रहा है एक कुर्सी रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ बहोत सारी औरते दिखाई दे रही है लेडिज खड़ी दिखाई दे रही है जिन्होंने बालों मे गजरे लगाए दिखे दे रहे है।